मछलियाँ रहते हैं जिसे मछुआरे लोग पकड़ने के लिए जाते हैं।

यह एक फुटबॉल का मैच हो रहा है यहाँ पे । यहाँ पे बहुत सारे लोग खेल रहे हैं । फुटबॉल का मैच बहुत ही बढ़िया मैच होता है । बहुत सारे लोग खेलते हैं । यह मैच --

यह एक सैलून है और सैलून में तो बहोत सारे लोग जाते है बाल कटवाने के लिए और सैलून में तरह-तरह के डिजाइन से बाल को काटा जाता है और सैलून में दाढ़ी फेशियल करवाने के लिए भी जाते है।

और यहाँ पे बहुत असानी तरीका से पैसा उठता है ।

इसलिए यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी किताब कॉपी खरीदने के लिए जाते है यहां का किताब कॉपी बहुत ही अच्छे होते है।